यहाँ पर एक कै मंदिर दिखाई दे रही है जिसके ता चारो तरफ और एक बीच में गुम्बद बन --

यहाँ पर एक कार दिखाई दे रही है जो कि एक सिल्वर कलर की है और इसके आगे स --

ये दुकान भी है जिसमें अमूल भी लिखा हुआ है।

यहाँ पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है ज --

यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके पी --

और एक गाड़ी पे बहोत सारे साउंड बॉक्स रखे हुए हैं साउंड बॉक्स --

माल गाड़ी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे।

यहाँ पर लाइन से बहुत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है जिसपे --

इसके सामने से एक नदी भी बह रही है जिसमे से थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है।